यह मस्जिद काफी बड़ा है यह मस्जिद काफी ऊँचा भी है यहाँ पर मुसलमान भाई आकर नमाज पढ़ते हैं शुक्रवॉर के दिन यहाँ सभी मुसलमान --

विद्यालय के सी.एछ.सी.एम.आर. विद्यालय के गेट काफी बड़ा है यहाँ पर लोहे की गेट --

बड़ा बिल्डिंग है यह बिल्डिंग काफी पुराना है इस बिल्डिंग के दिवाल पर तरह-तरह के चित्र भी है इस बिल्डिंग के गेट पर एक आदमी भी खड़ा है इस बिल्डिंग के सामने बहुत से आदमी भी है यह बिल्डिंग काफी सुन्दर दिख --